हेलो दोस्तो देखिये यहाँ पे कितना बढ़िया नजारा है यहां पे गाछी-वृछी है खेलने-कूदने वाला पार्क है कंपाउंड है सब चीज यहां पे है।

छाता और ये टाटा स्काई होता है वो लगवाना होता है उसके बाद ही टी.वी. आपका चैलेंज चैनल नहीं होता वो चालू होगा और काफी बढ़िया लगता है टी.वी. देखने में दोस्तों।